हमे एक पेट्रोल टंक नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है नायरा इसके पास दो पाइप लगे हुए हैं।

इस फोटो मे एक एक मूर्ति दिख रही है जिसके चारो और बाउंड्री बनी हुई है जोकि छड़ो की बनी हुई है इसके इसमे अंदर पेड़ पौधे लगे हुए है बाहर भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है जिसमे भी--

इस फोटो मे एक रोड दिख रहा है जिसके साइड मे एक बिल्डिंग बनी हुई है उसमे पे उसमे पेड़ पौधे लेगे हुए है और एक कार खड़ी हुई है और उसके साइड मे --

फोटो मे यामाहा का एक शोरूम दिख रहा है जिसमें एक साइड ऍक्टिवा खड़ी हुई है एक साइड बाइक खड़ी हुई है इसके अंदर काउंटर बना हुआ है जिस पे कुछ व्यक्ति बैठे हुए है और--